सामने एक चर्च दिखाई दे रहीं हैं जिसके ऊपर एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा हैं।

यह एक है जिसके अंदर एक ए_सी लगी हुई है और बहुत सारे लाइटें भी --

और इसमें पंखा लगा हुआ है और एक लाइट भी है और--

यह यह एक मशीन है जिसके पास एक आदमी खड़ा है यह प्रिंटिंग मशीन है जोकि अभी बंद है।

और आसपास में एक अरजेस्ट फैन लगा हुआ है और इसके अलमारियां बनी हुई हैं साइड में जो कि इसपे नीला पेंट किया हुआ है।

यहां पर एक आदमी कैमरा ले खड़ा हुआ है जिसने लाल शर्ट पहनी है और आज यहां पर --

आसपास में कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं और एक पतली सी गली जा रही है बीच में से।

यह एक रूम है जिसके अंदर बहुत सारी टेबलें और कुर्सियां पड़ी है और एक ए_सी लगी हुई है।

कुछ बहुत सारे ड्राइंग्स बनी हुई है और एक लाइट है जो कि बंद है और एक सामने स्पाइडर मैन बना हुआ है और इसके अंदर रंगरा कलर --

पेड़ भी दिखाई दे रहे है जिनकी पत्तियां भी दिखाई दे रही है और बीच में से एक सड़क जा रही है जोकि वह एक बिल्कुल काली है और आसमान--

में हरी हरी पत्तियां हैं और एक वाटर कूलर लगा हुआ है एक आदमी पानी पीने के लिए वाटर कूलर के पास जा रहा है और कुछ स्टेशन पर घूम रहे --

राम मंदिर लिखा हुआ है और--

इधर पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं जिनकी बहुत सारी पत्तियां दिखाई दे रही है।

और यह रे रेड कलर की टेडी और कुछ साइकिल्स भी खड़ी हैं जो कि बहुत अच्छे बच्चों की भी है।

और इसके पास एक दुकान है जिसका शटर लगा हुआ है जो कि बंद है और रात का समय है।

जो कि अभी चल रहे हैं और अंदर कुछ मालाएं भी लगी हुई --

और आसपास में कुछ किक्कर झाड़ियां दिखाई दे रही है जिनके पत्ते भी दिखाई दे रहे है और यह जंगल की तस्वीर है।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर एक पंखा और कुछ लाइट्स लगी हुई हैं।

और भी कुछ कुर्सियां वे मेज पड़े हुए हैं और एक आदमी--